पेड़-पौधा है छोटे पेड़-पौधा बड़े पेड़-पौधा और बेठे सब सफ़ेद कलर के लाल कलर के एथे कलर मा पोताय--